और सड़क पे बहोत सारी ऑटो दिखाई दे रही हैं जो कि अ पेट्रोल वाली ऑटो हैं।

यहां पर सामने की दीवार ऑरेंज कलर की है।

इस फोटो में एक जो है मार्के ये मेगा मार्ट दिखाई दे रहा है।

और यहां पर घास दिखाई दे रही है छोटे छोटे से यहां पर हमें पौधे भी दिखाई दे रहे हैं सड़क दिखाई दे रही है।

टेबल के ऊपर सॉस की बोतल रखी हुई है।

बाहर एक्टिवा खड़ी हुई है पार्किंग में बाइक खड़ी हुई है।